एक लडके ने बैंगनी कलर के कपड़े पहन रखे हैं। ये राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण योजना के तहत खड़े हुए हैं।

दोस्तों यहां पर बहोत सारे आदमी खड़े हुए है जिनमें कुछ बूढ़े आदमी भी है और वो कुछ दुकान पर से समान ले रहे है।

इन्जॉय करते है अपना-अपना।